इस स्टेज पे दो कुर्सियां भी रखी हुई है और स्टेज के चारों तरफ गेंदा के फूल से स्टेज को सजाया हुआ--

और एक आदमी ई रिक्शा पे खड़ा हो के फोटो भी खींचा रहा है।

और ऐसा लग रहा है ये गंगा घाट का फोटो है जहां पर गंगा आरती भी किया जाता है वैसा जगह बनाया हुआ है।

जीसमें बहोत से फेविकोल रखे हुए है।

बहो से इसमें लड़कियां है बहुत से लड़के हैं।

यह एक होटल का पिक्चर है जिसमें--

साथ में कलम भी बहुत रखें यहां अलग अलग कंपनी का भी कलम रखा हुआ है।